जैसे साबुन हो गया कपड़े धोने वाला साबुन हो गया।

यहां पर रेती बालू सीमेंट और कंक्रीट को मिला के उसका मिश्रण करके मसाला बनाया जा रहा है।

आपस में प्यार कर रहे हैं और सामने--

जो किसी प्रदर्शनी में रखे हुए ऐसा लग रहा हैं।